मुझे एक लोक सेवा केंद्र दिख रहा हैं जहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं साइड मे एक बोर्ड लगा हुआ हैं कुछ आदमी साइड साइड मे खड़े हुए हैं।

मुझे रोड दिख रहा है रोड के किनारे बाउंड्री दिख रही है सामने एक मंदिर दिख रहा है बिजली के खंभे दिख रहे है दुरी पर बहुत सारे घर दिख रहे है रोड दिख रहा है दोनों साइड बीच में से ब्लैक और वाइट कलर की बाउंड्री दिख रही--

अंदर जाने के लिए सीढ़िया दिख रहे हैं सामने छोटे-छूटे पेड़ लगे हैं मे पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे थोड़ी दूरी पर ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जस्ट उसके सामने ब्लैक कलर की बाउंड्री है।

मुझे एक बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमे सामने बोर्ड लगा हुआ हैं जिसमे लिखा हैं जी आई एम एस होमियों पैथिक मेडिकल कालेज --

मुझे एक समुन्द्र दिख रहा हैं उसके सामने मुझे पहाड़ दिख रहा हैं।

मुझे एक बड़ा सा अ बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमे जीला न्यायालय लिखा हुआ हैं सामने तीन आदमी दिख रहा हैं एक आदमी स्कूटी पे बैठा हुआ हैं एक मार्क्स लगाए हुए हैं और एक खड़ा हुआ हैं साइड मे एक पेड़ दिख रहा हैं।

मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग टाइप दिख रही हैं जिसमे स्टालिन लिखा हुआ हैं सामने छोटे छोटे से काउन्टर दिख रहा हैं कुछ मोटर साइकिल खड़ी हुई हैं एक कार खड़ी हुई हैं एक बेरीअर लगा हुआ हैं।